हरियाली है। बड़े-बड़े पेड़ हैं पौधे हैं और इसमें --

बुक सेन्टर बाहर में लोग बेच रहे हैं और काफी मोटे-मोटे बुक्स है|

और आगे इनमें से बहोत सेव्ड किया गया --

और ये नजारा बहोत अच खूबसूरत देखने में लग रहा है ये पीले-पीले --

इस पिक्चर में एक घर दिखाया जा रहा है और घर का मेन डोर दिखाया जा रहा है।

और उसके सामने में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

और एक आदमी अपने बाइक पे चढ़ रहा है।